एक मेडिकल है इसके आसपास में काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सामने आप देख ही सकते हो।

वेडिंग पर आए हुए है और आस पास सब लोग दिखाई दे रहे हैं --

एक हॉल है उसमें सामान पड़ा हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह।

और ये भारत में दिखाई दे रहा है और दूर दूर से--

जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है सामने एक बहोत खूबसूरत--

और सामने दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए खेलने के लिए।

और उसके पास में ही एक दिखाई दे रहा है जैसे कि पोस्टर ऊपर लगे हुए हैं।

रस्सी के सामने और पंप दिखाई दे रहे हैं।

उसमें छह तरह के पे टेबल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और काफी गाड़ियां है जो कि डीजल --

जैसे कि आपको सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें तीन मूर्ति दिखाई दे रही है जल के ऊपर।

चॉकलेट्स वगैरा है पैकिंग दिखाई दे रही है।

और बाहर निकलने के यहां पर दो रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके आसपास मे काफी फ्लावर भी दिखाई दे रहे हैं और आसपास काई कई पेड़ भी नज़र आ रहे हैं जैसे की केले का पेड़ पीछे नज़र आ रहा है।

दिखाई दे रहा है।

जैसे कि सामने एक मॉल नजर आ रहा--

जैसे कि सामने एक जिम दिखाई दे रही है।